जो और यहाँ में बहुत सारा पेड़ पौधा सब दिखाई मिल रहा है।

यह कोना में बड़ा बड़ा पत्थर देखने को मिल रहा है उसका हाथ में एक ठु--

इनमें भी अलग अलग कलर से लगाया हुआ दिखाई मिल रहा है और फ्लैश लाइट जलता हुआ दिखाई मिल रहा है।

और अंदर में अलमारी बहुत बड़ा अलमारी दिखाई मिल रहा है और हमें दो ठो फ्लैशलाइट भी जल के दिखाई मिल रहे हैं।

यहां में बहुत सारा आदमी लोग को देखने में मिल रहा है उसका पीछे में बहुत सारा घर लोग है कच्चा घर।

लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है उसका सामने में बुक भी है और साइड में--

और ये जो एक ठो अलमारी का अंदर में है बहोत सारा चीज जो और यहां में एक ठो गेट भी है घुसने के लिए।

यहां में एक ठो काली मां का फोटो स्टैचू है।

बहुत सारा खिड़की सब दिखाई दे रहा और ई बहुत बड़ा घर है।

घर को देखने को मिल रहा और सुखाया हुआ कपड़ा देखने को सब मिले--

यहां में बुलेट एक ठो दिखाई मिल रहा है और बहुत सारा बाइक सब भी दिखाई मिल रहा है और दो ठो बांस भी दिखाई मिल रहा है।

भी दिखाए मिल रहा है और यहाँ मे बहुत सारा वायर सब--

और फ्लावर पॉट स्पॉट दिखाएं मिल रहे हैं और यहां में टेडी बेयर सब भी है।

या में कार दिखाई मिल रहा है एक ठो और एक ठो स्कूटी दिखाई मिल रहा है और यहां तीन आदमी दिखाई मिल रहा है यहां में।

और यहां मैं बैनर भी बहुत सारा लगा के अलग अलग--

टी_वी भी दिखाई मिल रहा है जो की उसका अंदर में गाड़ी दिखाएं मिल रहा है और अलग अलग फ्लैशलाइट सब जलते हुए दिखाई मिल रहा है।

शीशा वाला टेबल एक ठो दिखाई मिल रहा--

यहां में स्ट्रीट लाइट भी देखने को मिल रहा है उसका पीछे में बहुत बड़ा एक ठो घर दिखाई मिल रहा है।

और यहां में बहुत सारा आदमी लोग देखने को मिल रहा है लड़की लड़का सब एंट्री पॉइंट में।

यहां मे बहुत सारे आदमी लोग पढ़ाई करके बेला लड़की लड़का लोग उसका पीछे में एक ठो ब्लू कलर का पर्दा भी है।

और बाहर में एक ठो वाइट कलर का गाड़ी को देखने मिल रहा है और लाइट बल्ब जलते व्हाइट कलर में देख रहा है।

और यहां में कागज से बनाया हुआ दो बॉक्स भी देखने को मिल रहा है।

यहां हमें बहुत सारा फ्लावर्स सब दिखाई मिल रहा है अलग अलग कलर का फ्लावर

और एक थु वॉच भी देखने को मिल रहा है और यहां में येलो कलर एक थु टूल्स भी देखने को मिल राहा हैं।

यहां में पेड़ पौधा सब जगह अलग अलग प्रकार का दिखाई मिल रहा है और ऊपर में बहोत बड़ा एक ठो पहाड़ दिखने को मिल रहा है।

यह एक बास्केटबॉल कोर्ट है यहां में दो इंसान खेल रहा है उसका में बहुत सारा आदमी लोग भी दिखाएं मिल रहा है जो की--

और सिटी साइन बोर्ड --